पहाड़ पर्वत तरफ जाकर फोटोशूट कराना या रहना बोहुत अच्छा लगता है। इसमें मन शांति मिलता है।

अ आलू मटर सब मिलता है।

यह फुल है। फुल में फुल आदमी लगाते हैं। घर के आगे शोभा बढ़ाता है। घर के आगे लगाते हैं। अच्छा लगता है देखने में।

हमारे नितीश कुमार बोहते अच्छे आदमी हैं।